यहां पर कितने बेजुबाने मछलियां दिखाई दे रही है।

यहां पर एक लाल कलर की डोरी भी जाती हुई नजर आ रही है यहां पर बिचारी को कितना दुख हुआ मुझे देखकर।

उसके बाहर एक शॉप दिखाई दे रही है यहां पर एक ऑटो जाता हुआ नजर आ रहा है कुछ व्यक्तियों की बाइकें खड़ी नजर आ रही हैं।

यहां पर दीपक मेडिको दिखाई दे रहा है यह रात्रि का समय है कुछ लाइटे जची हुई है।